यह एक घर है घर बहुत बड़ा बना हुआ है यह ऑफिस है यह बैंक है घर बना हुआ है पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है यहां पे बहुत सारी भेड़ लगी हुई है।

बहुत- यहां पे बहुत सारी खिड़कियां लिख रही हैं दो इधर लंबी-लंबी खड़कियां हैं दो झोटी-छोटी खिड़कियां हैं।

लिखा हुआ है साफ बहुत अच्छी रंग-बिरंगी बनी हुई है लाइट भी लगी हुई है सबके साथ --

ये ऑरेंज कलर से पेंट है शॉप के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं शॉप के अंदर डिब्बा भी रखे हुए हैं बड़े-बड़े छोटे-छोटे और बेच भी पड़ी हुई है।

एसमें येलो कलर की पिन पट्टी लगी हुई है और पैड दोनों ऊंचे की तरफ है एड़ी उठी हुई हैं।

लाइटिंग भी लगी हुई है कमाल भी लगे हुए हैं पैड लगे हुए हैं छोटे बड़े पैड लगे हुए हैं।

यह एक से बना हुआ है जो रेड कलर से ईटे से पटा हुआ है और नीचे फर्स लगी हुई यहां पे छाल कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

ये एक पेट्रोल टंकी है यहां पे सब लोग तेल डलवाने के लिए आते-जाते हैं सब चीज में तेल जो पड़ता है वहां पे ये इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

वाइट और रेड कलर में बना हुआ है और बड़े-बड़े सौर ऊर्जा लगा हुआ है बहुत सारे पॉट रखे हुए हैं छोटे-छोटे वो बहुत सुंदर लग रहे हैं उसमें पौधे लगे हुए हैं।

ये मंदिर है मंदिर में माता जी की मूर्ति नजर आ रही म-म-मूर्ति रखी हुई है उसके ऊपर छत्र तना हुआ है मूर्ति के पास में एक लाइट --

यह मार्केट लगी हुई है मार्केट में मछलियां काट रहे हैं और बेच रहे हैं बहुत सारे लोग मछलियां काट रहे हैं बेच रहे हैं बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई हैं।

यहां पे ईटा भी है और कुछ पौधे बहुत बड़े-बड़े से हैं कुछ पौधे बहुत छोटे-छोटे से हैं।